और यहाँ पे आगे पीछे देखिए वातावरण इतना अच्छा होगा इतना अच्छा कि बहुत अच्छा होगा और पेड़ ओड़ बहुत हरा --

ये देखिए कितना प्यारा-सा जंगल है यहाँ पे देखिए गाछ कितना गाछ लगा हुआ है बाप रे बाप बहुत ही गाछ है।

ये देखिए रेलवे लाइन है। यहां पर देखिए एक ट्रेन लगा हुआ है।